ब्लैक कलर की पाइप दिखाई दे रहा है।

कलर पेन दिखाई दे रही है कुछ इमोजिन्ज दिखाई दे रही हैं।

शर्ट दिखाई दे रही है अलमारी दिखाई दे रही है।

उनके हाथ मे एक त्रिशूल है उन --

राधा कृष्ण की तस्वीर दिखाई दे रही है। कुछ और तस्वीरें भी दिखाई दे रही हैं। एक --

कांच निकला हुआ है जिसपे रेड कलर से सिन्डकेट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है बहुत सारे लोग दिख --

सी.सी.टी.वी कैमरा दिखाई दे रहा है बहुत सारी शर्टे दिखाई दे रही हैं।

पूल में बहोत सारा पानी दिखाई दे रहा है। रिसपट्टी दिखाई दे रही हैं। सीमा दिखाई दे रही हैं। येलो और ब्लू कलर रिसपटी दिखाई दे रही हैं।

बहोत सारी लाइटस दिखाई देरी हैं बलून दिखाई दे रहे हैं औरेंच येलो व्हाइट कलर के।

रेल की पट्टरिया दिखाई दे रही है घास दिखाई दे रही है पत्थर कंकड़ दिखाई दे रहा है आसमान दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे एक दुकान दिखाई रही है। दुकान की दीवारों पे ऑरेंज पेंट पुता हुआ दिखाई दे रहा है। स्प्राइट की बोटल दिखाई दे रही है। चिप्स की पैकेट दिखाई दे रही है। कुरकुरे की पैकेट --

आसमान दिखाई दे रहा है। पड़े-पौधे दिखाई दे रहे हैं। पुल दिखाई दे रहा है। इसमें वाहन भी दिखाई दे रहे हैं।

लौकी भिंडी प्याज लस्सन टमाटर आलू गोभी बैगन चुकंदर रेला गाजर --

रजिस्टर दिखाई दे रहे है फर्श दिखाई दे रहा है टूटे- फूटे --

ब्राउन पेंट पुता दिखाई दे रहा है। बोहोत सारी चेयर्स दिखाई दे रही हैं। कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। एक जेंट्स ने --

यहाँ पे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसके ऊपर लाइट पिंक कलर पुता हुआ दिखाई दे रहा है। एक ब्लू कलर की दिखाई दे रही है |

फैन दिखाई दे रहे है। एक दुकान दिखाई दे रही है जिस पर व्हाइट पेंट पुता हुआ उस पर रेड कलर से माँ सीता लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

बिजली के खंभे दिखाई दे रहे हैं। बिजली के तार दिखाई दे रहे हैं। कुछ एक्सरसाइज करने की मशीन दिखाई दे रही है। आसमान भी दिखाई दे रहा है।